इस पिक्चर में देख पा रही हूं ये एक बाइक है और यहां बाइक --

इसमे कुछ काम करते हुये नजर आ रहे हैं।